और मुझे यहाँ पे कुछ ए_सी भी नजर आ रहे है।

बिल्डिंग के एंट्रेंस मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे है जिसमे--

इस तस्वीर में मुझे एक मॉल नजर आ रहा है यहां पे मुझे बहुत सारी चेयर्स भी नजर आ रही हैं।

कई गार्डन नजर आ रहे हैं गांव में मुझे बहुत सारे बच्चे देख--

जिसके पास मुझे एक बड़ा सा--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

जहां पे बहुत सारे लोगो मुझे दिखाई दे रहे हैं।

आस पास मुझे हरे भरे पेड़ और बिल्डिंग्स भी नजर आ रही है।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

जहां पे एक लकड़ी के एक सोफे रखे हुवे हैं इनके ऊपर एक ब्ल्यू कलर की गद्दीयां रखी हुई है।